जहां पे जाने का इंटर होने का जो मैंने डोर का रास्ता है वो यहां से होकर गुजरता है।

सामने काफी सुंदर मौसम दिखाई दे रहा है।

सामने एक रेस्टोरेंट या फिर कैफे का अ सीन आ रहा है।

ये यहां पे मरा हुआ पड़ा है ये नदी के बाहर है।

अ इसके बाहर ए कुछ आदमी बैठे हुए दिखाई दे रहे इसके बाहर इसका बोर्ड दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर कुछ खाने वाली --

दो आदमी भी है जोकि आस पास में गुजरते हुए नजर आ रहे एक आदमी के हाथ में झूला है और--

वो सामने एक रोड दिखाई दे रही है रोड के ऊपर काफी ज्यादा साइकिल --